बहुत ही बड़ा ग्राउंड है लाइट खंभे है बिजली के खंबे है वहां पर इर --

यहाँ पर बिजली के खम्भे में लगे हुए है एक माहीत है वहा पर कुछ रखा हुआ है एक पेड़ भी लगा हुआ है।

पत्थर वाली टाइल्स भी लगी हुई है टाइल्स के पास अ-एक दो कुछ लोहे की वो भी रखे हुए है।

पास मे कही टावर भी है और बहुत सारी हरी धुवा भी है स्विमिंग पूल पानी भरा हुआ है कई लोग भी है इधर और कई लोग बैठे भी है।

सूर्य उग रहा है लोहे की टावर खड़े हुए है बिजली के खंबे भी है यहां पे।

पीछे बड़े बड़े पेड़ पौधे है और आगे बहुत अच्छी छोटी छोटी तुबा लगी है ऊपर चढ़ने का रास्ता भी है।

बनाया गया है यहां पर स्टैचू को कपड़ा बनाया गया है और यहां पर स्टैचू के कपड़े भी बनाए गए है।

एक हॉल है वहां पे खंभा लगा हुआ है वहां पर थिएटर सा है वहां पे कॅफे भी लिखा हुआ है टेबल कुर्सी टेबल है।